गैराज है जिसमें कार वाशिंग के लिए आई हुई है जो ऊपर टंगी हुई है।

और पीछे एक लड़का काम कर रहा है।

ये काफी बड़ा सा पेड़ है बिल्डिंग के पास--

ऊपर देशभक्तों के फोटो लगे हुए हैं जिसमें भगत सिंह गांधी जी डॉक्टर अब्दुल कलाम--

जिसमें कोको कोला की मशीन लगी हुई है और यहां लिखा है ऑल टाइप्स ऑफ़ स्नूकर टेबल रिपेयरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ।

ये बड़े बड़े पेड़ हैं एक लोहे का बास खड़ा हुआ है जो लाल कलर का है।

और बड़ा सारा फुब्बारा चल रहा है और साइड से देखें तो बिल्डिंगें दिखाई दे रही हैं जिसमें--

और खिड़कियां काले कलर की हैं जिसके बाहर हरियाली है।

सब्जियां दिख रही हैं रोड कच्चा सा है दो खंबे हैं।

जहां चाय की पत्ती के बहुत सारे पेड़े हैं।

साइड में बाउंडरी है एक दिख रही है।

घंबे भी है पानी के बीच से दिख रहा है।